और यहां पर प्रकृति में अच्छा ही मौसम दिखाई दे रहा दूर दूर तक पहाड़ों की वादियां दिख रही--

यहां पर बहोत सारी जे_सी_बी क्रेन वगैरा हैं यहां पर येलो एंड --

यहां पर पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा है जैसे बहुत ही पत्थर वगैरा दिखाइ दे रहे हैं ऊपर आसमान बिल्कुल--

यहां पर एक नदी वगैरह या ताला वगैरह दिखाया जा रहा जो कि पुल के ऊपर और पुल--

ऐसा दिखाया जा रहा है कि रोड के पार्किंग के ऊपर रखा हुआ है।

सब कुछ डेकोरेशन कर रखा है फोटो से।

यहां पर दो बसें दिखाई दे रही हैं जैसे कोई--

दिख रहीं हैं और आसमान में कुछ अच्छे--

यहां पर होटल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें बेड वगैरह की अच्छी डेकोरेशन की हुई है।

कुछ मामला हो गया है ऐसा लग रहा है क्योंकि पुलिस की गाड़ियां--

बहुत ही अच्छी मशीन दिखाई गई है सीमेंट वगैरह का कुछ काम करने वाली शायद ऐसी मशीन --

पंखे वगैरा और ये मशीन वगैरा दिखाई गई है जैसे मोटर --

इनको अच्छे से तैयार कर रही है।

और साइड में भोलेनाथ की तस्वीर भी दिखाई गई है।